और भी बहुत सारे चीज है यहां वहां सोफा का कलर रेड और ब्लू है और बहुत सब अच्छे--

यहाँ एक कार्यालय स्कूल टाइप के लग रहे हैं ।

यहां पे कुछ मिट्टी के डिजाइनिंग बनाए हुए हैं छोटे-छोटे बड़े-बड़े --